इसमें हम देख सकते हैं कि यह किसी दुकानदार की--

जहां पीली कलर की वैन है और एक बस।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं की कई--

हड्डियों के डॉक्टर की है।

एक बेंच दिख रहा है।

लग रही है जिसमें जिसके साथ एक राशन की दुकान है।

पीले सफेद रंग के टेंट के जैसे--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक हमको--

वैन दिखाई गई है ट्रैवलर वैन लग रही है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह तस्वीर किसी--

ये सेंटर से खींचा गया है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है।

ये पूरी सेंटर से खींचा गया और इसे क्रीम --

ये कोई नर्सिंग होम है जिसका जिक्र ऊपर नाम में भी किया गया है दर्शन नर्सिंग होम ।

इसे एक कार्यालय की दुकान पर लगाया गया है कोई--

लोहे का गेट लगाया गया है इस तस्वीर में--

तस्वीर में हम देख सकते है कि यहां बहोत सारी घास--